यह एक गली है इस गली में बहुत सारे गाड़ियाँ आती जाती है इस इस गली में बहुत सारे घर भी है यह घर काफी पुरानी है।

यहाँ पर करेली भिंडी के सब्जी एवं बंधा फुलकोभी कद्दू गाजर आलू प्याज नारियल अनेक प्रकार के यहाँ पर सामान रखे गए हैं ।